--और गमले रखे है गमलो के अंदर पेड़ लगे हुए है और फर्श बना हुआ है ए पक्का और साइड में एक बॉउंड्री दिखाई है उसमे--

पीछे पेड़ दिख रहे है और सामने स्लाइड लगी हुई है और कुछ बच्चे पानी में खेल रहे है।

पर कुछ लिखा हुआ है और पीछे फर्श दिख रहा है और पीले कलर की पट्टी बनी हुई दिखाई दे रही है।

और पीछे आसमान दिख रहा है और कुछ टॉवर दिख रहे हैं टेलिफोन के और पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ ऑरेंज कलर की पट्टी दिख रही है और --